ये एक रोड है यहां पे आपको एक वेंडर्स स्टॉल रखे खड़े हैं।

ए अ कार है ऑटो है एक लेडी फोन पे बात करके जा रही है ये एक बॉय गाड़ी पे जा रहा है।

ये किंग साइज का बेड है जहाँ पे आपको आहा उ बैक साइड भी आपको आरा आ --

चीज़ रिसोर्ट्स पे मिलेगी अपनी फैमिली के साथ जाइए और रिसॉर्ट्स पे एंजॉय कीजिए ये कोरल रिवर रिसॉर्ट्स है।

यह एक मेला है यहाँ पे अपने बच्चों के साथ जाइए और हर चीज़ दे --

खेलने गोते अ खेलने के लिए आपको ग हर चीज़ है।

बाहर व्यूज़ नजर आ रहे हैं डिसेंट सी --

जीम में आप लोग अ जिम कर सकते हैं।

हर चीज ये जिम पर अवेलेबल है हे --

आपकी जो भी वेल्डिंग्स की जरूरत है आपको यहाँ कर लीजिए मेटल्स की मेटल्स की वेल्डिंग हो रही है एक सिलेंडर्स है।